और बहुत सारे लोग शेल्टर में भी बैठ रहे हैं जहां पर गुब्बारे भी लगे हुए हैं जो की सफेद और नीले दिखाए जा रहे है और बहोत सारे पेड़ भी लगे हुए है।

चित्रों में हम एक गैरेज देख सकते है जहाँ पर कार पूरी खुली पड़ी --

चित्र मे हम हर जगह एक मिट्टी ओ बहुत सी मिट्टी और हरी घास भी देख सकते है।